ये एक मंदिर की फोटो नजर आ रही है।

इस मंदिर का जो शिखर है वो हरे कलर का नजर आ रहा है।

ये एक सोसाइटी की फोटो नज़र आ रही है।

ये एक डेम का फोटो नजर आ रहा है।

एक पीछे की ओर वापी लिखा हुआ घर नजर आ रहा है।

यहां पर लिखा है प्योर बाय नेम प्योर बाय नेचर भगवती मिल्क पार्लर शांति नगर और उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ--

एक गेट जिसपे सी लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है।

यहां पे बहोत सारे टाइप के फल रखे हुए नजर आ रहे हैं।

ऐसे संतरा पोमीग्रेनेट सेब अ केला आदि।

खाली मैदान में बहोत सारी टेबल और कुर्सियां लगाई गई है जहां पे लोग बैठे हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग पीछे काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे बहुत सारी प्लेट एक के ऊपर एक रखी हुई है और खाने के काउंटर दिख रहे हैं।

ये एक स्ट्रीट की फोटो नजर आ रही है।

एक रेड कलर की और एक ग्रे कलर की कार पार्क करी हुई नजर आ रही है।

ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के फोटो --

एक लाल कुर्सी नजर आ रही है और बहुत सारी पेंटिंग नजर आ रही है।

एक आदमी पीली शर्ट में पेहना हुआ जिम करता हुआ नजर आ रहा है।

सोलर पैनल में सूरज की रोशनी चमक रही है।

पीछे बहोत सारे घने पेड़ और झाड़ियां नजर आ रही है और बहोत सारी बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है जिसकी व्हाइट कलर की है।

बीच के पास बहुत सारे कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं और झाड़ियां उगती हुई नजर आ रही है।

एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाती हुई नजर आ रही है।

इसका नंबर जी जे सिक्स के डी थ्री जीरो फाइव जीरो है।

यह एक खुले मैदान की फोटो है। जहां से नदी गुजर रही है।

यह एक गुरु कृपा बंगलो दिखाई दे रहा है।

जहां एस_बी लोन और कमरा मिलेगा ऐसा लिखा हुआ है।

और भी बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए है जैसे कि ग्रोवर सोनी के टी_वी और अन्य चीजें--

इस पोट्स शॉप में फुटबॉल टेनिस और बैडमिंटन के रैकेट दिख रहे हैं।

बहुत सारी शटल की कैन टेनिस के बाल की कैन और शूज भी नजर आ रहे हैं।

ये एक ग्रॉसरी स्टोर की फोटो नजर आ रही है।

मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति ऊपर नजर आ रही है।

एक आदमी जिनो सिसने रेड टी शर्ट पहनी हुई है वो खड़ा हुआ दिख रहा है।

एक झूला जो स्लाइड है वहां वो येलो कलर की नजर आ रही है।

ये इंडियन रेलवेज के एक इंजन का फोटो लग रहा है।

ये एक घर के बरामदे की फोटो लग रही है।